यह किसी के मकान का सीन है जोकि काफी लाइटों से झालरों से सजा हुआ है कुछ लाइट आगे की तरफ बैंगनी रंग की है और कुछ लाइट ग्रीन कलर की है और कुछ लाइट --

ब्लू कलर की है और कुछ लाईट रेड कलर या पिंक कलर की है और सामने निचे की तरफ र यल्लो कलर की लाईट भी दिख रही है ऊपर की तरफ एलइडी बल्ब वाईट कलर के जोके लगे है।

ये एक बड़ा सा ग्राउंड है जोकि काफी सुन्दर दिख रहा है। इसके बीच में गोल चक्कर सा है जैसे की वो झरने का है। इधर की तरफ एक टाईल वाली रोड भी है और ऊपर एक मंदिर बना है। यह कुछ है। इसमें बेड पड़ा हुआ है।

किसी मैरिज हॉल का सीन है | जिसमें काफी सारी लाईटें लगी हुईं हैं और परदे लगे हुए हैं | एक गेट जो कि येलो कलर का है और साथ ही सारी एल.ई.डी. बल्ब भी लगे हुए हैं |

लेटने की व्यवस्था भी है दो आदमी दिख रहे हैं जोकि इसकी तकिया इधर-उधर सुधार रहे हैं और कुर्सियों को सही से तरीके से लगा रहै हैं।

यह किसी डेम का सीन है। जिसमें पानी साईड में भरा हुआ है और ऊपर डेम ब्लू कलर का है और --

इसे हम डेम के पास पहोच सकते है और इसके आसपास एक घर भी बना हुवा है जिसे बिल्डिंग कह रहे है हम वाइट कलर का है जो --

ये एक तरह की नुमाइश लगी हुई है जिसमे बहुत बड़ा गेट है यहाँ से अंदर सब जाते है ऊपर गेट की तरफ दो शेर गोल्डन कलर के बने हुए दिख रहै हैं।